पास में गुलाब का पौधा लगाया हुआ है जिसमें पिंक कलर के गुलाब खिला हुआ है।

सामने जो दीवार का कलर है वह वाइट कलर का है ऊपर में छोटा सा डिब्बा रखा गया है।

आस पास जैसमिन के भी फूल है जो कि व्हाइट कलर की है।

व्हाइट कलर की एक वाइट और ब्लू कलर की तो एक काले कलर की स्कूटी है।

एक रोड दिख रहा है जो कि पूरा खाली है उसके पास में ब्लू कलर का कारपेट बिछाया हुआ है।

यह दृश्य कॉफी शॉप का है जिसके सामने एक बेस्ट कॉफी लिखा हुआ है।

इसके अगल बगल बहुत सारे ईंटें फेंके हुए हैं बगल में एक पोल फेंका हुआ है।

बहुत सारी हिरण दिख रही हैं जो कि पीले कलर की हैं और उनका पैर जो कि व्हाईट कलर का है।

यह एक दृश्य एक दुकान का है जिस दुकान में बहुत सारी सामग्री रखी गई है।

ऊपर मैं बहुत सारे फूल लगाए हुए हैं जोकि गेंदा के फूल है जो की ऑरेंज कलर के ग्रीन कलर के है ऊपर बहुत सारे पत्ते भी रखें गये हैं।

अगल बगल बहुत सारी बोर्डे टंगी हुई है एक बोर्ड पे लिखा हुआ है ए_टी_एम तथा आधार कार्ड से निकासी और ट्रांसफर किया जाता है।

यह दृश्य एक दुकान का है जिस दुकान का नाम है स्वर्णा एण्ड बर्तन दुकान।

में एक पीले कलर की जे_सी_बी लगी हुई है जो की बहुत सारी ईटे को कोड़ रही है।

यह दृश्य दशहरे की है जिसमें सामने एक मूर्ति बना कर रखी गई है जो कि दुर्गा माते की है।

दूसरा जिसने पीले कलर का पहना और तीसरा जिसने कुर्ता पहना हुआ--

पास में एक वाइट कलर का पाइप गया हुआ है उसके अगल बगल कुछ और भी व्यक्ति लोग बैठे हुए हैं।

आस पास बहुत बडे बडे घर बनाए गए हैं जो कि पिंक कलर के वाइट कलर के और बहुत सारी टंकीया रखी गईं हैं जो कि वाइट कलर की है।

यह दृश्य ग्राउंड का है इसके आसपास बहुत सारे लोग भीड़ जमा के खड़े हुए हैं।

बस में एक पुरुष है जिसे हाथ में झोला लिया हुआ है पिंक कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ है।

यह दृश्य एक मोबाइल दुकान का है जिसमें बहुत सारी मोबाइले रखी हुई है।

सामने एक बोर्ड लगाया हुआ है जिस पे जिओ फोन लिखा गया है।

इस पर बहुत सारे और भी डिबिया रखी हुई हैं और बहुत सारे कार्टून के बॉक्सेस रखे हुए हैं।

ये व्हाइट कलर की बहोत बड़ी सी बिल्डिंग है जिसमें एक ए_सी भी लगा हुआ है।

बगल में एक टीचर खड़ा है जोकि पिंक कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहने हुए हैं।

आस पास बहुत सारा पानी जमा हुआ है और बहुत सारी कनई भी है।

इसके पार्ट में काले कलर के माउस लगाए हुए है सामने में ऊपर में व्हाइट कलर के बल्ब लगाइ हुई है।

इसके आसपास बहुत सारी ग्लास लगाई गई हैं जोकि नीले रंग की है।

आसपास और भी लोहे की सामग्री रखी गई है सामने में एक रेड कलर का गद्दा लगाया हुआ है।

यह दृश्य एक सैलून का है जिसके बाहर बहोत सारी बैलून लगाई गई है जो कि व्हाइट और नीले कलर की है।

यह दृश्य एक रूम का है जिस रूम के बाहर दो चेयर लगी हुई है।

आसपास बहुत सारे सोफे लगे हुए हैं जोकि रेड कलर के हैं।

यह दृश्य एक रेलवे स्टेशन का है जिसमें एक व्यक्ति जो कि व्हाइट कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहने हुए है।

बहुत सारी डिब्बियाँ रखी हुई हैं जो कि ग्रीन कलर की पिंक कलर की हैं जिसमें चूड़ियां रखा गया।

सामने गुलदस्ता रखा गया है जिसमें बहुत सारे आर्टिफिशियल फूले लगाई गई।

सामने बहुत सारी शैंपू रखी गई है जैसे कि क्लिनिक प्लस वाटिका ।

जिसमें बहोत सारी गेटे बनाया हुआ है और चरतल्ला बिल्डिंग बनाया हुआ है।

यह दृश्य एक सैलून दुकान का है जिस दुकान का नाम है ए वन एन जे बी पार्लर --

उसके पास में कुछ पानी के जार रखे हुए हैं जो की ब्लू कलर की है।

इस हॉस्पिटल के बाहर एक ऑरेंज कलर का चेयर लगा हुआ है जीस चेयर पर व्यक्ति बैठा है जो कि ग्रीन कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहने हुए हैं।

सामने में बहुत सारी ऑटो लगाई गई है एक ऑटो जो कि रेड कलर की है और बहुत सारी ऑटो जो कि ब्लू और ग्रीन कलर की है।

गेंदे के फूल है जो कि ऑरेंज कलर के और येलो कलर के हैं।

एक व्यक्ति जो कि ढोलक बजा रहा है जिसने मरून कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई है।

बच्चियां है वो ब्लैक कलर के स्कर्ट और ब्लू कलर का शर्ट पहने हुए है।